यहा पे बिजली के खंबे और काफी ज्यादा पेड़ दिख रहे है थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पाणी की दो टंकिया भी दिख रही है और काफी सारा कचरा भी।

हुई है कुछ खाने पिने की कुछ जुस की तो यहाँ पर बैठने ने की जगह भी है एक टेबल और उसके आइट साइड चार कूर्सी रखी हुई है लोग यहाँ पे खाते हुए दिख रहे है।

हुई दिखाई दे रही है शॉप के अंदर लगा पंखा और लाइट भी दिख रहा है शॉप के बाहर इस दुकान के बोर्डिंग भी लगे हुए है और एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

समुद्र अलग-अलग शेप और साइज की नाव चल रही है और एक बडासा आसमान दिख रहा है।

यहा पर हमे एक इमेज दिखाई दे रही है जो की एक चाय की दुकान की है ये दुकान बाहर से देखने मे बहुत अच्छी लगती है।

यहा पर मुझे एक फोटो दिखाई दे रही हैं जो की एक दुकान के बाहर की हैं ये दुकान के अंदर खाने का समान मिलता हैं।

ये दुकान के अंदर खाने के सामान के पोस्टर लगे हुए है जिसपर उसका नाम और उसके प्राइस लिखे हुए है यहा पे पानी की बोतल क्यूआर रखा हुआ दिख रहा है और एक आदमी खड़ा हुआ--

यहा पर मुझे एक फोटो दिखाई दे रही है जो की एक मॉल के अंदर की है यहा पे क्लोथ सेक्शन दिख रहा है कुछ लोग कपड़े खरीद ते हुए दिख रहे है कुछ लोग कपड़े--

काफी छोटी है ये बस्ती के बहुत सारे घने-घने पेड़ भी दिख रहे है और बिजली के तार --

ये दुकान देखने मे काफी ज्यादा सुंदर है ये दुकान के ऊपर पान के बहुत सारे बोडिंग लगे हुए है और लोग इसे खरीदेते हुए दिख रहे है।

उसिके बगल मे एक कपड़े की शॉप है और साइड मे बॅग टंगे हुए है और यहा पर लोग कपड़े खरीदते हुए दिख रहे है।

'' और विमेन्स सेक्शन दिख रहा है जिसमे काफी सारे कपड़े टंगे हुए है और लोग आते जाते दिख राहे है। ''